ये फोटो में मुझे एक जिम का अंदर का दिखाई दे रहा है।

घर का सामने में एक पेड़ है।

एक आदमी सफेद रंग का टी शर्ट पहन के काम कर रहा है।

ये पिक्चर में मुझे एक एयरपोर्ट का गेट का बाहर का दिखाई दे रहा है।

दुकान का अंदर में मुझे एक पांडा का डॉल दिखाई दे रहा है।

दुकान में सब समान शीशा का अंदर में रखा हुआ है।

पिक्चर में मुझे बहोत ज्यादा ग्लास का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

ऑथराइज्ड डीलर ऑफ ए_सी_ई रोइंग अरुणाचल प्रदेश करके लिखा हुआ है।

और दुकान के अंदर में दो टेबल फैन भी रखा हुआ है।

फोटो में मुझे बिजली की तार दिखाई दे रहा है।

यह फोटो में मुझे एक सड़क का किनारा दिखाई दे रहा है।

दो औरत वरांदा में खड़ा है।

कारपेट ग्रीन ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है।